ये किसी पार्क की फोटो है जिसमे एक स्टेचू लगा हुआ है उसके नीचे उनका नाम औ --

लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं किसी पंडाल के नीचे।

स्ट्रीट लाइट नजर आ रही है पीछे बिल्डिंग है।

शादी का एक स्टेज दिख रहा है।

पीले कलर का नजर आ रहा है एक येल्लो कलर का छाता टाइप बना हुआ है।

काले और सफेद कलर की टी-शर्ट पेहनी हुई है बाहर बहुत सारा सामान रखा है।